तालाब के किनारे एक मंदिर है।

वह कुर्सियां भी रखी हुई है कुर्सियों का रंग सफेद है ऊपर चद्दर की--

यह एक जिम का दृश्य हैं जिम में बहोत सारी मशीनें रखीं हुई हैं।

शांति प्रतीत हो रही है सामने की तरफ कांच भी लगा हुआ है।

जा रहे हैं यह एक मंदिर की लाइन लग रही है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है रेस्टोरेंट में टेबले लगी हुई है व कुर्सियां भी लगी हुई है।